इसमे एक घर दिखाई दे रहा है यह घर --

एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है दुकान के फर्श पे सफ़ेद कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

कूट पर कैरियर मंत्रा क्लासेज लिखा हुआ है।

इसमें एक मैरिज मैरेज गार्डन दिखाई दे रहा है।

रखे हैं और टॉफ़ी के पैकेट रखे हैं एक पंखा लगा है लाइट लगी हैं कुछ कुर्सियाँ --

और एक पोस्टर लगा है जिस पे डी.एस.पी कॉफ़ी लिखा है।

और दो ट्यूब लाइट लगी हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि क्रीम कलर से पुती हुई है ।

चिन्हें दिखाई दे रहे है ये दोनों चिन्हें क्राइस्ट के है ।